यहां पे बगल में ए_सी भी लगा हुआ है।

यहां पे बगल में एक कार्टून भी रखा गया है और दीवार के पीछे मिट्ठी भी है बहुत सारा--

यहां पे टेबल पे एक्वेरियम रखा हुआ है।

इस चित्र में एक व्यक्ति सर्वे करते हुए नजर आ रहा है।

पीछे में बहोत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

एक साइकिल का दुकान का चित्र दिखाई दे रहा है।

यहां पे नीचे में टाइल्स भी लगा हुआ है।

यह कोई पुराना गुफा का चित्र है जैसे कि गुफा के पास एक व्यक्ति खड़ा है वह खड़े होकर फोटो क्लिक करवा रहा है।

जैसे कि सारे घर की जरूरत मंद समान दिख रहे हैं।

यहां पे बहोत सारे पौधे लगे हुए है जिसमें से एक पौधे पूरा सूखा हुआ है और सारे पौधे हरे भरे हैं।